जिन पर हमें बहोत सी दुकानें नजर आ रही है।

कांच का बड़ा सा रैक दिख रहे हैं।

एक फ़िल्टर नजर आ रहा है।

हमें एक हॉल दिखाई दे रही है।

भूरे रंग का एक दरवाजा दिख रहा है।

आध मैं फोन लिए दिखाई दे रहे हैं।

सामने बड़ा सा मैदान है जिसमें बहोत से पेड़--